जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एक बेयरहाउस में एक टाली है और टाली में रुद्राक्ष वेयरहाउस डिग्री बना है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सांस कार्तिक--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सेंसशन ब्यूटी कोर्स है यहां पर सभी प्रकार की ब्यूटी पार्लर --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एक--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एक मेडिकल में सभी प्रकार की दवाईयां या ट्यूब मंजन सभी प्रकार की--

जैसा कि मैं देख पा रहा हु कि एक पिकअप में--

और सभी प्रकार के बच्चे इस विद्यार्थी यहां पर आते हैं।

जैसा कि हम देख पा रहें हैं कि डी_जे बॉय सौंड़ --

जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रजनी लेडिज टेलर्स है यहां बहोत अच्छी सिलाई मशीन करती है।

हमको कुछ एक लड़का दिखाई दे रहा है बगल मे कुछ साइकल दिखाई दे रही है।

और कुछ आदमी टेंट लगाती हुई नज़र आ रहे हैं कुछ आदमी होटल के बगल में खड़े आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे है कि--

और ये पुल के ऊपर कुछ जानता दिखाई दे रही है जनता धनंजर--

जैसा कि हम देख पा रहे हैं की--